एक अ रोड गया हुआ है साइड से यानी वो एक छोटा सा पुल है। पुल ही है वो और नीचे उसके पानी भरा हुआ है। और उस रास्ते में एक एक व्यक्ति खडा हुआ है जो कि चश्मा लगाया है।

अ सामने ये एक इमेज दिख रही है जिसमें बहोत सारे यानी ये स्टूडेंट ही हैं और जो कि कुछ दो लोग हैं जो कि उनके हाथ में --

ये सामने आपको एक व्यू अ एक इमेज दिख रही है ठीक है और उसमे बहुत ही प्यारा व्यू नजर आ रहा है जिसमें छोटी-छोटी सी घास है और नीचे पानी भरा हुआ है बोतल भरा हुआ है और एक पेड़ भी लगा हुआ है और लाइट्स की खंबे भी लगे हुए हैं और जो आसमान है वो बहुत ही प्यार नजर आ रहा है ।

स्कूल की इमेज है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं और टीचर्स भी हैं और बच्चे कुछ अं कुछ आर्ट क्राफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं यानी इनका आज आर्ट क्राफ्ट का एक्टिविटी का टर्न है तो बच्चे --

भगवान जी हैं मतलब भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है और यानी उनकी स्थापना हुई है यानी वो पूजा करवा रहे हैं क्योंकि उसमें कलश भी नजर आ रहे हैं बहुत सारे और एक लेडिज खड़ी हुई है और एक बच्चा खड़ा है जोकि --